जो की स्काई ब्लू व सफेद कलर के हैं इस पर लिखा है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।

यहां झूले का कलर लाल व हरा दिखाई दे रहा है।

यहां सामने एक मकान भी दिखाई दे रहा है।

यहां की दीवाल पे लिखा है क्रिस्टा आई_वी_एफ फर्टिलिटी सेंटर और यहां एक काउंटर भी है।

यहां काउंटर भी है जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां की दिवाले ग्रे कलर की नजर आ रही है।

यह एक जंगल है यहां लाइन से कई सारे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं।